यहां एक छोटा सा घर भी दिख रहा है जिसकी छत टीने की है।

इस व्यक्ति के पीछे शीशे लगे हुए हैं।

ये तस्वीर किसी सैलून का लग रहा है।

इस तस्वीर पे मुझे गेट दिख रही है।

यहां पर मुझे दो चेयर दिख रही है।

इस तस्वीर पे मुझे तीन चार घर दिख रहे हैं।